बाइक हैं बाइक का कलर ब्लैक है एक लड़का है बैठा हुआ है व्हाइट कलर का शर्ट पहना है।

घर हैं घर का कलर व्हाइट हैं खिड़की हैं खिड़की का कलर ब्राउन हैं।

एक आदमी है। पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है। व्हाइट कलर का पैंट है।

दुकान है दुकान का कलर ग्रीन और व्हाइट है ब्लैक कलर का शटर है ब्लैक कलर का बोर्ड है।

लैपटॉप है लैपटॉप का कलर ब्लैक है पिन्नी है जिसका कलर ब्लू है।

फूल का बगीचा है उसमें येलो कलर का फूल है ग्रीन कलर का पत्ता है एक आदमी बैठा हुआ है जिसने व्हाइट और ब्लैक कलर का शर्ट पहन रखा है।

एक दुकान हैं दुकान का कलर येलो ब्लैक हैं ब्लैक कलर का लाइन हैं चप्पल है चप्पल का कलर ब्लैक है जूता है जूता कलर ब्लू और व्हाइट है।